सामने शीशा लगा हुआ है बलूंस लगे हैं हरे सफेद और बैंगनी रंग के--

सामने भी एक घर दिख रहा है जिस पर जीजस का साइन बना हुआ है।

नीचे कुछ हरी छोटी पहाड़ियां है।

जो कि नीचे जमीन पर लेटे हैं।

किताबों की दुकान दिखाएं दे रही है।

तस्वीर में एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है।

डांस करती हुई दिख रही हैं।

पीछे भी सुंदर चित्रकारी की हुई है।

जो की एक सड़क पर लगा है।